बहुत सारी बिल्डिंगे दिख रही है। एक मंदिर दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे है। बिजली की खंबे दिख रही है। बहुत सारी खिड्किया दिख रही है।

एक बड़ासा पहाड़ दिखाई दे रहा है एक किला दिखाई दे रहा है यहा कुछ लोक दिखाई दे रहे है।

एक गार्डेन दिखाई दे रहा है पानी की पाइप दिखाई दे रहा है बिजली वाला खंबा दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

एक गार्डन दिखाई दे रहा है लोहे की रेलिंग्स दिखाई दे रही है एक बॅनर दिखाई दे रहा है पेड पौंधे दिखाई दे रहे है फुल्स दिखाई दे रहा है।

भगवान गौतम बुद्ध कि कुछ प्रतिमा दिखाई दे रही है।

इलेक्ट्रॉनिक समान दिखाई दे रहा है।

एक सलून कि दुकान दिखाई दे रहा है सिसे दिखाई दे रहे है खुर्सिया दिखाई दे रही है कूच समाने दिखाई दे रहा है।

एक सडक दिखाई दे रहा है। जहा कुछ लोग दिखाई दे रहे है। ऑटो दिखाई दे रहा है। कारे दिखाई दे रही है।

पड़े पौधे दिखाई दे रहा है। गाडिया दिखाई दे रही है। बैनर्स दिखाई दे रहा है।

कुछ दुकाने दिखाई दे रही है आरती बुक सेंटर दिखाई दे रहा है साइड मे एक और दुकान दिखाई दे रही हे कुछ लोग दिखाई दे रहे है गाड़िया दिखाई दे रही है एक टेम्पो दिखाई दे रहा है।